यहाँ पर एक मकान बोहोत अच्छा बना हुआ है जिससे यहाँ पर बोहोत --

सामान खरीदते है तो बहोत अच्छा नल हमें लगता --